यहां पर एक दो टंकी भी दिखाई दे रही हैं।

इस मशीन का रंग पीला और ब्लैक दिखाई दे रहा है।

एक डस्टबिन भी दिखाई दे रहा है यहां पर एक दो व्यक्ति--

यह एक एयरपोर्ट नजर आ रहा है जहां पर एक--

यह एक फार्म हाउस दिखाई दे रहा है।

यह एक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ लेडिस और कुछ जेंट्स नजर आ रहे हैं।

साइड भी तीन स्टंप दिखाई दे रहे हैं।

के आस पास बहुत ग्रीन ग्रीन हो रहा है उसका मैदान बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है।

और कुछ दो रस्सियां भी दिखाई दे रही है।

दो अदर और दुकान दिखाई दे रही हैं।

और कुछ टिशर्ट भी दिखाई दे रही है यहां--

और कुछ पोस्टर भी लगे हुए हैं।

और यहां पर आस पास बहोत घने पेड़--

और दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।